यह एक नदी का फोटो है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है एक नदी के किनारे घास खड़ी हुई है घास का कलर हरा है और आसमान सा--

ब्लू ब्लू कलर का लाइनिंग हो रही है यहां पर एक नीचे गेट पर कुछ लेडीज जाती हुई दिखाई दे रही है।

ये फ्लावर से बनी हुई झांकी का फोटो है यहां पर कलर कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं और झांकी में--

यह किसी बुक्सि की शॉप का फोटो है जहाँ पे बहुत सारे बुक्स लगी है और बुक्स से बाद में बहुत सारे तिरंगे लगे हुए तिरंगा में तीन कलर है हरा वाइट और --